जोकि सेना के हैं और--

और बहुत सारे सामानों के डब्बे और बोतलें भी रखी हुई हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बहोत बड़ा ट्रेन दिख रहा है।

बहोत सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक खाली प्लॉट दिखाई दे रहा है उसमें पानी की बिसलेरिया भी रखी हुई है।